बड़े बड़े पेड़ है यहां पे गाय दो तीन है अमरीकन देसी--

पेड़ है चारों तरफ एक सीडी है गाड़ी है ईंट वगैरा पड़ी हैं बैनर लावे हैं।

गणेश महाराज जी बहोत बड़ी मूर्ति है जो भी हाथों से निकाल रखे हैं

यह एक तबेला है जिसमें बहोत सारी गाय हैं।

ये एक दुकान है जहां पे एक शीशा है एक चेयर है एक पॉट रखा फ्लॉवर है।

कुर्सियां बन रही बन रही है स्टील की ग्रिल लग रही है ऊपर छप्पर बनाकर टीन घेर रखी हैं।

यहां पर गमले वगैरह रखे हैं।

कुर्सियां है मेज वगैरा खाने के स्टूल हैं डस्टबिन वगैरा बहुत सारे आदमी जिनके हाथों में प्लेट है।

इसके अंदर एक खुला आसमान बिजली का टावर है।

जैसे पानी की एक बॉटल है फोन है।

जिसकी बहुत सारे खिड़की दरवाजे दिख रहे एक पानी का पाइप कितने भी है।

और डिब्बियां में बहुत सारा सामान नीचे छिले वगैरा पाउडर है।

ये एक व्हाइट कलर की गाड़ी है जिसके ब्लैक शीशे है।